कुछ लोग भी दिखाई दे रहें हैं इसे सब्जी मंडी में --

भोजन का व्यवस्था हैं यहाँ पे एक पानी का टंकी भी आ रखा हैं यहाँ पे।

और कुछ गोल-सा है वो भी लाल कलर का है नीचे --

जिसमे एक पंडाल बना हुआ हैं उसके अंदर में काफी सारे छोटे-छोटे --

बाउंड्री के इधर एक मिटी का ढेर भी दिखाई दे रहा हैं अ आसमान भी दो तीन रंग का दिखाई दे रहा है उपर में ।

ये कुछ लोड हैं जो सीख रहे हैं।

खेत दिखाई दे रहा है जिसमें एक ही कलर का काफी सारे गाछ रोपे गए हैं लग रहा हैं जेसे कोई फुल का हो या कोई चीज का पेड़ हैं वो|

एक बिजली का दो तीन बोर्ड भी लगा हुआ हैं।

कुछ लाइक भी हैं कुछ ओ छाता टाइप का भी लाइट हैं लग रहा हैं जैसे इस मकान का मूहरत हुआ हो।